और यहां पे ऊपर टीन है।

और नीचे मकान भी है।

और यहां पे शाम क यहां पे पेड़ भी है।

सामने टी_वी लगा हुआ है।

शीशा लगा हुआ है और--

यहां पे नीचे भी बहुत सारे जंगले हैं।

यहां पे ओ भी छोटे छोटे पेड़ भी है।

और यहां पे लगी हुई है।

यहां पर सामने अलग अलग कलर की।

ये बहोत अलग अलग कलर के--

यहां पे एक बै बैग भी रखा हुआ है।

और यहां पे कुर्सी बिछी हुई है।

यहां पे मसाला दानी भी है।

फूलो की लड़ी लगी हुई है।

यहां पे ऊपर कैमरा लगा हुआ हैं।

और यहां पे गुड्डे टंगे हुए है।